सामने की दीवार पर ला इलाहा इल अल्लाह मुहम्मद रसूल उल्लाह लिखा हुआ है।

साइड में श्री राम किराना स्टोर की दुकान है।

जो एक बड़े मॉल के अंदर है।

ये एक हैव मोअर का आइस क्रीम पार्लर है।

सामने की तरफ एक एस_बी_आई बैंक है।